लगता है पानी पड़ा हुआ है कच्चा --

सब मिल्क पाउडर बना ग्रोसरिएस चल रही है।

लगी हुई दिखाई दे रही है जो --

और उसी के पास में कई सारे मंदिर दिखाई दे रहे हैं।

पार्क आरोगय के केंद्र एवं स्टोर की दवाइयों के लिए उपलब्ध कराया गया है